फंक्शन का है जिसमें लाल रंग का मैट बिछाया हुआ है टेबल चेयर लगे हुए हैं डस्टबिन भी रखा हुआ है।

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक झरने की है यहां बहुत सारे चट्टान पत्थर है।

यहाँ बहोत सारे लोग खड़े है कोई कार्यक्रम चल रहा है बहोत सारी महिलाएं हैं बच्चे हैं।

और कुछ कार्यक्रम चल रहा है सब ने अलग अलग रंग के कपड़े पेहने हैं।

यहां बहुत सारे घास पेड़ पौधे लगे हुए है।

पूरी काफी बड़ी है पीले रंग की आस पास बहोत सारे--

बहोत सारे रस्ते है जाने के लिए रस्ते में पानी भरा हुआ है।

नीले रंग के कांच लगे हुए हैं आस पास बहोत सारे पौधे पेड़ है ये कोई कॉलेज का कैंपस लगता है।

बहोत सारे लोग बाहर खड़े हुए हैं।

एक टी_वी लग है लगा हुआ जिसमें मैच चल रहा है एक आदमी बड़ा लंबा सा जिसने काले रंग की शर्ट पहनी--